नमस्कार openfoam उपयोग करके supersonic flow over a wedge पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में मैं दिखाऊँगी: supersonic flow over a wedge की compressible flow प्रश्न को how करने और paraview में परिणामों को postprocess करने के बारे में
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ linux operating system ubuntu version 1004 openfoam version 210 paraview version 3120
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए सीखने वाले को compressible flows और gas dynamics की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
अब openfoam उपयोग करके wedge पर supersonic flow को हल करें और paraview उपयोग करके निर्मित shock structure को देखें
the problem consists of a wedge with a semiangle of 15 degrees kept in a uniform supersonic flow इस प्रश्न में 15 डिग्री के semiangle की एक वैज है जो एक समान supersonic flow में रखी है
इनलेट वेलॉसिटी 5 मीटर प्रति सेकंड है
boundary conditions चित्र की तरह सेट की गयी हैं
यहाँ मैं जो सॉल्वर उपयोग कर रही हूँ वो rhocentralfoam है
यह density घनत्व पर आधारित compressible flow solver सॉल्वर है यह kurganov और tadmor की central upwind स्कीम्स पर आधारित है
एक कमांड टर्मिनल खोलें यह करने के लिए अपने कीबोर्ड पर एक साथ ctrl +alt+ t कीज़ दबाएं
इस कमांड टर्मिनल में वैज पर सुपरसॉनिक फ्लो के लिए पाथ टाइप करें
टर्मिनल में टाइप करें run और एंटर दबाएं
cd space tutorials और एंटर दबाएं cd space compressible और एंटर दबाएं cd space rhocentralfoam और एंटर दबाएं
cd space wedge15ma5
यह rhocentralfoam में वैज पर सुपरसॉनिक फ्लो के फोल्डर का नाम है और एंटर दबाएं
अब टाइप करें ls और एंटर दबाएं
आप तीन फ़ोल्डर्स 0 constant और system देखेंगे
अब blockmeshdict file खोलें इसके लिए
टाइप करें cd space constant और एंटर दबाएं
cd space polymesh ध्यान दें यहाँ m कैपिटल है और एंटर दबाएं
अब टाइप करें ls और एंटर दबाएं आप blockmeshdict file देख सकते हैं
blockmeshdict फाइल देखने के लिए टाइप करें gedit space blockmeshdict ध्यान दें यहाँ m और d कैपिटल में हैं एंटर दबाएं
इसे कैप्चर एरिया में लाएं नीचे जाएँ
इसमें आपको वैज के लिए निर्देशांकों की गणना करनी है
यह प्रश्न में पहले से ही गणित और सेट की गयी है
शेष डेटा समान रहता है
boundary patches में चित्र में प्रदर्शित की तरह बॉउंड्रीज़ सेट हैं
blockmeshdict फाइल बंद करें
wedge फोल्डर में वापस जाने के लिए कमांड टर्मिनल में टाइप करें cd space dot dot दो बार
अब 0 ज़ीरो फोल्डर खोलें
इसके लिए टाइप करें cd space 0 और एंटर दबाएं
टाइप करें ls और एंटर दबाएं
यह प्रेशर वेलॉसिटी और टेम्परेचर के लिए प्रारंभिक बाउंड्री कंडीशन्स रखता है
टाइप करें cd space dot dot और एंटर दबाएं अब हमें ज्योमेट्री मैश करनी है
इसके लिए कमांड टर्मिनल में टाइप करें blockmesh और एंटर दबाएं मैशिंग पूरी हो गयी है
अब ज्योमेट्री देखने के लिए कमांड टर्मिनल में टाइप करें parafoam और एंटर दबाएं इससे paraview विंडो खुलेगी
object inspector मेन्यू के बायीं तरफ apply पर क्लिक करें
इसमें आप वो ज्योमेट्री देख सकते हैं जिसमें आयताकार सेक्शन अपस्ट्रीम से बदलकर वैज डाउनस्ट्रीम होता है पैराव्यू विंडो बंद करें
अब सॉल्वर rhocentralfoam को रन करें
इसके लिए कमांड टर्मिनल में टाइप करें rhocentralfoam और एंटर दबाएं
रन हो रही iterations टर्मिनल विंडो में दिख सकती हैं
इसके अभिसारित होने के बाद या टाइम स्टेप के अंत तक यह रन होना रुक जायेगा अब सॉल्विंग पूरी हो गयी है
इन परिणामों को देखने के लिए एक बार फिर पैराव्यू विंडो खोलें
कमांड टर्मिनल में टाइप करें parafoam और एंटर दबाएं
object inspector मेन्यू के बायीं तरफ दोबारा apply पर क्लिक करें
active variable control मेन्यू में ऊपर बायीं तरफ solid color दिखाते हुए आप एक ड्राप डाउन देखेंगे इस पर क्लिक करें और इसे solid color से कैपिटल u करें
अब color legend को on करें active variable control मेन्यू के ऊपर बायीं तरफ क्लिक करें और color legend on करें इस पर क्लिक करें
पैराव्यू विंडो के ऊपर आप vcr control देख सकते हैं play पर क्लिक करें
आप u velocity के अंतिम परिणाम देख सकते हैं
अब बायीं तरफ object inspector menu में properties पर नीचे जाएँ अब properties के आलावा display पर क्लिक करें
नीचे जाएँ और rescale to size पर क्लिक करें आप velocity magnitude की अंतिम वैल्यू देख सकते हैं
उसी प्रकार आप pressure चुन सकते हैं आप pressure का अंतिम परिणाम देख सकते हैं अब पैराव्यू विंडो बंद करें
आप फ्लो के लिए mach नंबर की गणना भी कर सकते हैं इसके लिए हम openfoam उपयोगिता प्रयोग कर सकते हैं कमांड टर्मिनल में टाइप करें mach
टाइप करें mach
ध्यान दें यहाँ m कैपिटल में है और एंटर दबाएं आप प्रत्येक टाइम स्टेप के लिए mach number देख सकते हैं
अब दोबारा पैराव्यू विंडो खोलें कमांड टर्मिनल में टाइप करें parafoam और एंटर दबाएं
apply पर क्लिक करें नीचे जाएँ volume fields में ma बॉक्स को चेक करें और दोबारा apply पर क्लिक करें
active variable control मेन्यू के ऊपर solid color पर क्लिक करके इसे ma करें
vcr control मेन्यू में दोबारा play पर क्लिक करें और color legend on करें
आप color legend और सम्बंधित रंगों के लिए mach number देख सकते हैं
we notice here that when the wedge is kept in supersonic flow it produces a shock across which the flow properties like temprature pressure
अब मैं स्लाइड्स पर वापस जाती हूँ हल किये हुए ट्यूटोरियल जॉन डी एंडरसन की aerodynamics की बुनियादी किताबों में उपलब्ध ठीक हल के साथ प्रमाणित किये जा सकते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: * एक कम्प्रेसिबल फ्लो प्रश्न को हल करना
नियत कार्य में फ्लो के लिए shock characteristic देखने के लिए वैज एंगल को 10 ° से 15 ° परिवर्तित करें
यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है इस url पर उपलब्ध वीडियो देखें:
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है यह भारत सरकार के mhrd के ict के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा समर्थित है
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद